और इसमें बहुत सारे फ्लावर लगाएं हैं।

यह एक रूम का सीन है जिसमें एक तकिया है और एक बेड है।

दो बड़े पोस्टर है और उसमें डांटेगंज लिखा गया है इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है।

कुछ लोगों ने प्रॉपर यूनिफार्म पहना हुआ है कुछ लोगों ने नहीं पहना हुआ है।

बस का कलर सफेद और ग्रीन है और जिसमें हल्का ग्रीन और डार्क ग्रीन दोनों है।

घर के उधर बहोत सारे खेत हैं।

दो तीन कारें दिखाई दे रही हैं एक कचड़े वाला दिखाई दे रहा है।

डेम के ऊपर कोई जा रहा नहीं गया न जा दिखाई नहीं दे रहा है।

जिसमें एक डोजर लगा हुआ है बगल में बहुत सारे छड़ी गिरे हुए हैं।

बहोत सारे डब्बे हैं जिसका रंग सफेद--